इसमें मुझे दो पर्दे दिख रहे हैं।

मुझे इसमें रॉड दिख रही है।

मुझे इसमें अलमारियां बनी दिख रही है।

मुझे इसमें स्टोर रूम दिख रहा है।

इसमें मुझे ये स्टूल दिख रहा हैं।

इसमें मुझे बॉटल में पानी दिख रहा है।

इसमें मुझे रोड दिख रही है।

इसमें मुझे एक झोला रखा दिख रहा हैं।

इसमें मुझे होटल दिख रहा है।

इसमें मुझे शादी का डेकोरेशन दिख रहा है।

मैं मुझे नदियां दिख रही है इसमें मुझे बिल्डिंग्स दिख रही है।

इसमें मुझे डॉक्टर रूम दिख रहा है।